हाथ में लोहे की रेलिंग दिख रही है जो कि काले रंग की है।

जो कि लग रहा है अभी-अभी कसरत करके खड़ा हुआ है। वो फोन से अपनी फोटो निकाल रहा है।

और उनके हाथो में मोमबतियां भी हैं और बहुत सारे लोग क्रास के अगल-बगल खड़े हो कर प्रभु इशु की आराधना कर रहे --

ख ये खेत शायद सरसों के लग रहे हैं।

जहां से बहुत से लोग नहा रहे हैं।

कुछ नाव पर लोग सवार होकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं।

झुक कर गुफा में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है।